मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाइ दे रहा है।

सामने की ओर कई सारा सामान भी यहां पर दिखाई दे रहा हैं।

आस पास मे कई सारी हरियाली भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

बोर्ड पर विश्वविद्यालय वनस्पति उद्यान लिखा हुआ हैं।

आसमान का कलर नीला दिखाई दे रहा हैं।

मुझे यहां पर एक बड़ीसी शॉप दिखाई दे रही हैं।